और आसपास में दो तीन चेयर दिखाई दे रहे हैं कुछ स्विच बोर्ड भी दिख रहे हैं।

यह पानी थोड़ा थोड़ा साफ भी नजर आ रहा है।

एक नदी दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर के यहां पे बाहर में ढेर सारी बाईकें रखी हुई है।

यहां पे छोटा सा सीढ़ी भी बना हुआ है जाने के लिए।

और फेविकोल की चीजे रखी गई है जिसमें फेविकोल मरीना लिखा हुआ है।

और ढेर सारे लोग दिख रहे हैं और दो तीन बैनर भी टंगे हुए हैं।

रेड कलर की है थोड़ी थोड़ी--

यहां पे लाइटें भी जल रही है।

तस्वीर में एक मील का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दिखने में काफी बड़े लग रहे हैं।

उसका बगल में एक वाइट कलर का रूम दिखाई दे रहा है।

बोड़ा के बगल में एक प्लास्टिक में ढेर सारी मिर्च और भी रखे हुए हैं।

ट्रक दिखाई दे रहा है।

यह घर के ऊपर एक सिक्योरिटी का सिंबल बनाया गया है।

यहां पे नीचे में एक शटर एक गेट --

ऑटो को खरीद के वहां पे फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक मालिक ने कस्टमर को ऑटो बेचा है।

और एक शटर और एक रूम दिखाई दे रहा कुछ सीढ़ी भी लगाए हुए हैं।

बोर्ड और कुछ घड़ी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में ढेर सारे सीऐट के टायरे दिखाई दे रही है जो ऊपर में रखी गई है।

इस तस्वीर में ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं।

जो यहां पे ट्रेनिंग के दौरान लाए गए हैं।

एने वाले सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

जो किसी जगह पे बैठे हुए हैं।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

इसने टाइ भी लगे हुआ हुआ है और पीछे में इसके पास कुछ दिल के सेप बने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक फैन लगाया हुआ है अंदर भी कुछ कुर्सी हो सकते हैं।